उस ऑफिस में कुछ केबिन भी बने हुए हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक आईस क्रीम पार्लर दिख रहा हैं।

मुझे इस पिक्चर में एक काफी सुंदर नजारा दिखाई दे रहा है।

वहा काफी सारी बॉल्स और स्टीकर भी रखे हुए है।

मुझे इस पिक्चर में एक लाइब्रेरी दिखाई दे रही है।

अंदर कुछ टेबल और चेयर भी रखी हुई है।

और ऊपर कुछ डंडे भी लगे हुए हैं।

और एक फ्लोर पे कोई लड़का भी खड़ा हुआ है।

और दूसरे लड़के को ग्रे शर्ट पहनी हुई है।

शायद वह किसी गेम की प्रैक्टिस की प्लानिंग कर रहे है।

शायद वह किसी लॉर्ड बुद्ध के टेंपल की हैं।